इस इमेज में आप देख सकते है की यहाँ पर एक रोड है। जिसके उस पार एक बहोत बड़ा और एक बहोत बड़े एरिया में फैला हुआ एक --

जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो की यहाँ पे दो रिक्शा आप को दिख रहे हैं जिसमें से कुछ लोग रिक्शा के अन्दर बैठे हैं कुछ --

खड़े हुए है और यहाँ पे प्लास्तर किया जा रहा है और एक खड़े ऊपर देख --

अधिक बसे खड़ी हुई है संख्या मे कम से कम दस बारह बस --

बहो और बहोत ऊँचे-ऊँचे पेड़ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।

जहाँ पे यु.पी.एस.सी. आई.जी.एन.ओ.यू. बुक्स भी मिलती है।

और यहाँ आस-पास आप देख सकते हो कितनी गन्दगी फैली हुई है।

और एक कार भी यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी जो की खड़ी हुई है | सामने से एक युवक बाइक ले कर आता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा।

इस इमेज में आप देख सकते हो की यहाँ पे एक युवक खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके पास एक पर्स भी है यह एक बस के सामने खड़ा हुआ है ।

सामने बहुत सारी बाइक भी रखी हुई है कम से कम छह से सात बाइक यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्टिवा भी रखी हुई है ।